इस तस्वीर मे हम देख रहे है बड़े ही सुंदर तरीके से इस सादी के।

वाच है लाइटे है ए.सी. है कई सारे लोग है जो यहां चेयर पर बैठे हुए है।